मुझे यहां पर कई सारी महिलाएं दिख रही है।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

मुझे यहां पर बहोत सारी महिलाएं दिख रही है।

सामने की ओर कई सारे पौधे दिख रहे हैं।

मुझे यहां पर कई सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

आसपास में कई सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।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

यहाँ पर बैग भी दिख रहे हैं।

यहां पर डेकोरेशन भी दिख रहा है।

यहां पर कुछ बॉटल भी दिखाई दे रही है।

सामने की ओर सीढ़ियां बनी दिख रही है।

यहां पर कई सारी बिल्डिंग भी दिख रही हे ।

यहां पर कई सारी बाल्टियां भी दिखाई दे रही है।

बॉटले कांच की दिखाई दे रही है।

सामने की और पटिए भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहाँ पर एक शाॅप दिखाई दे रही है।

महिलाएं साड़ी पहने हुए दिख रही है।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

ऊपर की ओर बड़ा सा आसमान दिख रहा है।

यहां पर एक कार दिखाई दे रही है।

रोड पर फर्स्ट समृद्धि लिखा हुआ है।

यहां पर एक बैनर भी दिखाए दे रहा है।

मुझे यहाँ पर कई सारी हिरन दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक इमारत दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहां पर कई सारी कैन दिखाई दे रही हैं।

बोर्ड पर सेठ्या टायर्स लिखा हुआ दिख रहा हैं।

मुझे यहां पर एक इमारत दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर कई सारे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।